काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है।

दो लड़का लड़की खड़े हुए हैं।

यहां पर पीली तिरपाल दिख रही है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक हरा टब नजर आ रहा है।

कुछ दवाइयों के डब्बे दिख रहे हैं एक फोटो लगा हुआ है।

इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में हमें एक गैराज दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक होटल दिखाई दे रही है।

जिनमें हमें गुलाबी और पीला रंग दिख रहा है।

इस चित्र में हमें ब्लॉसम नर्सरी दिख रही है यहां कुछ गमले रखे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक गैराज दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

काफी सारे फूल की माला टंगी हुई है।

इस चित्र में एक ब्रिज बना हुआ है।

हाथ में डंडा पकड़े हुए है।

कुछ बलून लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक क्लासरूम नजर आ रहा है।

जिस पर एक पेड़ नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बॉयज हॉस्टल दिखाई दे रहा है सामने हमें दरवाजा नजर आ रहा है।

सामने हमें कुर्सियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक बस दिखाई दे रही है।

कुछ हमें पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

कुछ मालाएं दिख रही हैं।

आदमी खड़ा है जिसने चश्मा पहना हुआ है।

एक औरत बैठी हुई है।